यह एक फ्रूट की दुकान है जिसमें बनाना मैंगो और काफी सारे फ्रूट्स हैं और एक आदमी है जो की ब्राउन और ब्लैक कलर की शर्ट में है।

रेक बना हुआ है जो की लकड़ी का है और कुछ कर रहे है ये लोग और उसमे एक बूढ़ा आदमी है जो की धागे लटकाया हुआ है इस तरफ भी उस तरफ भी व्हाइट कलर की दीवार है।

एक आदमी है जो कि बस के सिरहाने बैक साइड से खड़ा है | ऊपर से झाड़ और आसमान नजर आ रहा है | दूर तक एक आदमी ब्लू कलर की शर्ट में नजर आ रहा है | रेड बस है।

यहां पर ये कुछ मंदिर है मंदिर के बाहर कुछ रेलिंग लगी हुई है ऑरेंज कलर का एक रैक लगा हुआ है एक दो आदमी है जो कि घूम रहे है।

ये एक सामोहिक कुछ लग रहा है जिसमें काफी सारे लोग हैं जोकि सिर पे गमछा पहने हुए टोपी पहने हुए बैठे हुए हैं।

यह एक रूम है रूम में ग्रीन कलर का अ पेन्ट किया हुआ है पीछे की तरफ यलो कलर के फूल डेकोरेशन है और --

पहनी है जो अंकल ने वो थैरिपी उनको दे रहे हैं ।

और आसमान नज़र आ रहा है । पेड़ पौधे नज़र आ रहे हैं चारो तरफ पानी पानी बहुत ही फोर्स में बह रहा है और कुछ दिवालें हैं जोकि डैम की नज़र आ रही हैं ।

यहाँ पर कुछ पानी ही पानी हैं पानी के चारों तरफ लोग खड़े हुए हैं जो कि मल्टीकलर में पहना हुआ है झाड़ है।

पीछे पेड़ पौधे हैं और बीच में फर्श दिख रहा हैं पीछे कि तरफ झाड़ ही झाड़ नज़र आ रहे हैं और कुछ आसमान भी नज़र आ रहा हैं।